इस इमेज में यहां पर बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और साइड में एक काउंटर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पेड़ भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है सामने एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर दीवार पर एक शोकेस दिखाई दे रहा है और अंदर दवाईयां भी नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने चर्च दिखाई दे रहा है और यहां पर सुंदर सा डेकोरेशन भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है और सामने एक बोट भी नजर आ रही है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और रेलवे ट्रैक भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है और कुछ लोग नीचे काम करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है और दीवार पर बड़ा सा स्टार भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक अ अलमारी और ड्रेसिंग टेबल दिखाई दे रहा है वहां पर पानी की बोटल रखी हुई --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बाहर टेबल और कुर्सी भी रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है सामने बड़ी सी इमारत भी नजर आ रही है।